काउंटर बना हुआ है जिसमे एक कुर्सी पर एक व्यक्ति फोन चला रहे हैं।

एक गेट लगा हुआ है जिसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ है।

जिसमें बहुत सारे टेबल लगे हुए हैं।

गेट लगा हुआ है पीछे एक बड़ा बिल्डिंग बनी हुयी है।

जिसमें सरस्वती मां की मूर्ति रखी हुई है।

जे कुर्सी लगी हुई है।

सामने एक बाइक में हेलमेट टंगा हुआ है।

यह कोई दुकान है जिसमें लिखा हुआ है।

यह कोई सब्जी मंडी है।

और मिर्च ही मिर्च दिख रहे है।

बहुत सारे व्यक्ति महिला व पुरुष खड़े हैं।

रोड मे बैरिकेटिंग राखी हुई है।

सामने बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं।

ये कोई पार्टी हॉल है।

नीचे बहुत सारे श्रद्धालु गण खड़े हैं।

फोन से फोटो खींच रहा है।

पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

जिसमें बहुत सारे लाइट जले हुए हैं।

महिला एवं पुरुष आ रहे हैं।

दो गुलदस्ते रखे हुए हैं जिसमे बहुत सारे फूल हैं।

बहुत सारे टेबुल रखे हुए हैं।